भिंडी रखी है शिमला मिर्च खीरा लोकी गाजर तुरई बैगन और उसे तोलने कि मशीन रखी है। कुछ समान प्लास्टिक कि पॉलीथिन मे रखा है।

कोई लोग है दो वो है खेत मे| खुला आसमान है।

एक बगीचा है। जिसमे लाइट जल रही है। एक डस्ट्बिन रखा हुआ है पेड़ के नीचे एक लड़की कि चेयर्स बनी हुई --

रनिंग की रेस हो रही है जहाँ पर तीन बच्चे रनिंग कर रहे हैं। एक खू रेस कि लाइनिंगस बनी हुई है।